रास्ते से कुछ गाड़ियां और कुछ लोग --

ते कुछ बच्चों के कपड़े हैं।

कुछ बिजली के खंभे यहां पर लगे--

और यहां पर कुछ लोग--